यहाँ पे एक झाड़ू भी रखी गई --

यहाँ एक इस्कूल है। यह इस स्कूल बहोत बड़ी है। यह इस्कूल में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आते है। यह स्कूल में बोहोत सारे बच्चे पढ़ते है। यह पे लड़की लड़के सभी पढ़ने के लिए यहाँ आ --